और ये वाईट कलर के और यहाँ पे बोहोत सारे बेलून्स सजाए हुए है जो कि रेड और ब्लू और पिंक कलर को बेलून्स सजाई और यहाँ पे बहुत सारे जिम करने के सामान रखे है जो कि रेड कलर की है और यहाँ पे ग्रीन कलर की फर्स बी -अ- टाइल अ -फर्स बीछी हुई है जो बोहोत ही --

शायद ये न्यू खुले है और यहाँ पे भी है ना बहुत सारे बैलून्स सजाए हुए हैं ब्लू ऑरेंज एंड ग्रीन कलर के बैलून्स से सजाए हुए है जो की बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे जो है छे कुर्सियाँ भी हैं जो की एक के ऊपर एक रखी हुई है और बहुत --